दूर पर कुछ लोग खड़े हैं।

यहाँ पे नदी है नदी के किनारे कुछ नाव है जो नाव में बहोत सारे आदमी है।

यह हॉस्पिटल का रूम काफी बड़ा है।

फील्ड के सामने बहुत सारे पिलर है जिसमें लाइट ऑन है।

बहोत अच्छे से गार्डन की देखभाल होती होगी।

एक दूसरे से बात कर रहे हैं इस टेबल पे प्लेट और पानी के बोतले भी रखी गई है।

रुके हुए हैं और बहोत सारे कार भी रुके हुए हैं।

ये एक शादी का घर लग रहा हैं यहां सोफे में एक आदमी पीले कोट --